दीवार पर इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड भी लगे हैं।

इस फोटो में एक माल का दृश्य दिखाया गया है।

मॉल को रंगीन गुब्बारों से सजाया गया है।

काउंटर पर अलग अलग तरह के गुलदस्ते बने हुए रखे हैं।

पोस्टर पर टिनी टोट्स लिखा हुआ है।

सामने की दीवार पर एक पंखा लगा हुआ है।

इस फोटो में किसी दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

अलमारीयों के अंदर अलग अलग तरह की किताबें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में सामने की तरफ एक दुकान दिखाई गई है।

बैनर पर टुंडे कबाबी लिखा है।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

दुकान में सामने की तरफ केले के पत्ते बिछे हुए हैं।

नर्सरी में पीछे की तरफ गमले भी रखे दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाया गया है।

कुछ भक्त मंदिर के अंदर पूजा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह किसी रेस्टोरेंट का दृश्य है।

मेज के ऊपर पानी की बोतल ग्लास व कटलरी रखी हुई है।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

इमारत के सामने हरि घास का मैदान है।